और बहुत से लोग झूले-झूल रहे हैं। ये बोहोत ही आनंद दायक है।

रोज़ाना यहाँ पर बहोत से लोग --

और यहाँ पर एक पुरुष और एक महिला खड़ी हुई है।

कुछ बच्चे इन स्लइड पर खिसक रहे हैं।

बोर्ड पर रामा भार स्तूप के उत्तर अविनेत अवशेष लिखा हुआ है।

यह मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है।